यहां आगे एक बड़ी मछली रखी हुई है एक पानी की बॉटल रखी हुई है।

इस तस्वीर में आपको कुर्सियां दिख रहीं हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे।

लोग बैठे हैं कुर्सियाँ रखी हुवी हैं।

इस पिक्चर में एक क्राफ्ट की दुकान दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।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

अ रिक्शा के साथ एक आदमी दिखाई दे रहा है।

कुछ छोटी मोटी दुकानें भी आसपास दिखाई दे रही है पीछे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

दो लोग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

कलर्स की अलग अलग प्रकार की--

पेड़ के नीचे कुर्सी पर एक बैठा हुआ आदमी दिख रहा है और एक तरफ कार को--

शायद मैकेनिक से बनवाया जा रहा है।